यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे टब रखे हुए है जिसमें बहोत सारी मछलियां रखी हुई है झींगे रखे हुए है बडी वाली मछली है छोटी मछली रखी हुई है सिल्वर कलर की मछली है काले कलर की मछली है झी--

ये एक जिम है जिम के अन्दर बहुत सारे इलेक्ट्रोनिक सामान रखे हुए हैं बहुत सारी यहाँ पर मशीन रखी हुई हैं एक्सरसाइज की किसी का रंग पीला है तो किसी का रंग लाल और सामने बड़ा सा मिरर लगा हुआ हैं जिसके ऊपर में एक लाईट लगा हुआ हैं।

ये एक बडा सा गार्डन है यहां पर बहुत सारे पेड पौधे लगे हुए हैं सामने एक सीमेंट का चबूतरा बनाया गया है सामने में छोटी छोटी दूर से बिल्डिंग नजर आ रही है और चारों तरफ बडे बडे पेड पौधे लगे हुए--

यहां पर बहुत सारी गाडियाँ खडी है बाइक है लाल कलर कि स्कूटी है सफ़ेद कलर की कार है बिल्डिंग के सामने एक बडा सा पेड़ है बिल्डिंग के पीछे एक बड़ा सा पेड़ है सामने एक मट्टी की ढेर है।

सामने बहुत सारे लोग खडे हुए है बैठने की कुर्सी दिख रही है और खम्बे दिख रहे हैं बिजली के तार लगे हुए हैं और पेड पौधे लगे हुए हैं।

एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसके सामने एक सफेद रंग की कार रखी हुई है और यहाँ पर मिट्टी का रूल है जिसमें काफी सारे छोटे-छोटे--

सामने में एक अ चबूतरा जैसा बनाया गया है जिसके ऊपर में कबीलें लगे हुए हैं।